दिए गए तस्वीर में एक बड़ा सा टावर दिख रहा है।

इसके ऊपर रोलिक और अमूल लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति पेट्रोल डलवा रहा है।

हॉस्पिटल के बाहर बड़ा सा ग्लास लगा हुआ--

दी गई तस्वीर में एक कमरा है।

दुल्हन ने अपनी घूंघट को पकड़ा हुआ है।

और रैक में बहुत सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखा--

और दुकान के बगल में एक सफेद का--

एक हुडी पहने हुए हैं एक व्यक्ति के गले में मफलर है।

एक बिल्डिंग के चारों ओर किया गया बाउंड्री है।

गुलाब को हरे रंग के ग्रो बैग में लगाया गया है।

बिल्डिंग के पीछे एक ऊंचा टावर भी है।

एक तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है।

एक पर गिरजा घर लिखा हुआ है।

गेट के बाहर बड़े-बड़े ग्लास लगाए गए हैं।

बिल्डिंग के सामने कुछ बाइक लगी हुई है।

जिसके बाहर झाड़ू रखा हुआ है।

दिए गए तस्वीर में एक छोटा बच्चा पेड़ पे चढ़ा है।

और बच्चे ने लाल कलर का शूज पहना है।

दी गई तस्वीर में एक कमरा है।

एक महिला भी खड़ी है।